काफी लोग दिखाई दे रहे हैं और लाइटें दिखाई दे रही है।

और एक आदमी दिखाई दे रहा है पास में बाइक खड़ा कर रहा है।

एस_बी_आई भारतीय स्टेट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ।

यहां पर देखिएगा दो मंजिल की इमारत नजर आ रही है दो मंजिल का--

और ऊपर नीला नीला सा आसमान बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है।

पास में बिजली के खंबे भी है तारे भी दिख रहे हैं।

एक नाला सा दिख रहा है उसके ऊपर ये कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर देखीए की सुंदर सा गार्डन दिखाई दे रहा है। बगीचा दिखाई दे रहा है जो की काफी हरा भरा नजर आ रहा है।

जिन पर लिखा हुआ है एवरीवन गेस्ट एजड बट इट्स योर डिसीजन है ना--

और पैंट शर्ट के कपड़े रखे हुए दिख रहे है कोट दिख रहे है कोट टंगे हुए दिख रहे हैं।

और बीच में देखिए सरस्वती माता जी की गणपति जी की तस्वीर लगी हुई है।

ऊपर से देखिए सूरज की रोशनी नजर आ रही है।

बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति नजर आ रही है काफी बड़ी है।

और ये बड़े-बड़े ढोलक ले रखे हैं आदमियों ने उनके सिर में सेहरा बंधा हुआ है।

बड़ा सा हॉल है जिम दिखाई दे रही है इसमें जिम की मशीनें दिखाई दे रही है काफी सारे एक्सरसाइज करने की मशीनें दिखाई दे रही है।

तीन व्यक्ति खड़े हैं जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं।

आस-पास के दुकान में से एक दुकान खोली दूसरी बंद है।

और यहां पर देखिए ब्लू कलर का लिखा हुआ है विवा--

यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स एक बड़ी सी विशाल सी नदी दिखाई दे रही है जहां पर पांच नावें नजर आ रही है।

हर एक हर एक नाव पर पांच छह नाव नजर आ रही है हर एक नाव पर दो दो व्यक्ति बैठे हुए हैं जो चप्पू चला रहे है।

यहां पर देखिएगा फ्रेंड्स एक होटल दिखाई दे रहा है जिस पे लिखा है होटल सीता पैलेस लिखा हुआ है बड़े-बड़े अक्षरों में--

सामने ब्लू कलर के पैकेट्स में कुछ रखे हुए हैं।

जिसके आसपास देखिए टेबल बना हुआ है बीच में कुर्सी रखी हुई है टेबल के ऊपर एक फ्लावर पोर्ट रखा हुआ है।